आप देख सकते हैं कुछ-कुछ काम रुका हुआ है और यहाँ पे पीछे तरफ भी घर बना हुआ है काफ़ी सुन्दर लग रहा है देख --

काफ़ी ऊँचा बन रहा है पर आप देख सकते हैं की खिड़की दिया हुआ है और कितना अच्छे से डिज़ाइन किया गया है । और आप देख सकते हैं की --

और शाम का टाइम है और आप देख सकते है ऊपर में काफी बढ़िया-बढ़िया डिज़ाइन किया गया है और गेट के पास भी बहुत अच्छा डिज़ाइन करके बनाया गया है साइड में काफी बड़ा-बड़ा घर है काफी बड़ा-बड़ा रूम भी है।

और सीन भी बहुत अच्छा-अच्छा है और घूमने का भी जगह है घूमने के लिए जगह भी दिया गया है आप घूम भी सकते हैं टहल भी सकते हैं।

बाइक्स रखे हुए है और भीड़ भी है बैंक के अंदर में तथा आप देख सकते है काफी बड़ा जगह है और काफी नेटवर्क पकड़ने वाला जगह है और काफी अच्छा-अच्छा सीन भी है।